दोनो माताओं ने चुनरी ओड़ी हुई है।

यहाँ पर कॉलम डालके कॉलम खड़े हुए हैं यहाँ पर दो मैंन हैं।

उसके नीचे हरी हरी सी डूबा लगी हुई है।

यहां पर एक कचरा डालने वाला कचरे दान है।

ग्रीन - ग्रीन से पेड़ हैं।

यहाँ पर पब्लिक प्लेस दिखाई दे रहा है।

गेंदा येलो कलर की गेंदा के फूल की माला बनी हुई है।

यहाँ पर मुझे दो बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग के दोनों बिल्डिंगो के रा बिच से रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये --